एक गणेश जी का मुहूर्त है जोकि काले रंग में है और ऊपर का जो मुकुट है पी--

ये एक सीलोन है सीलोन में एक लड़की बैठी हुई है जो कि पीछे इसका हेअर स्टाइल बनाया जा रहा है और बहुत सारा--

टंकी भी छोटा सा है और एक आदमी बैठा हुआ दिख रहा है थोड़ा सा खंबा दिख रहा है बहुत सारे तार दिख रहे हैं आसमान दिख रहा है एक औरत --

एक आदमी जो कि ब्लैक कलर का शर्ट पहना हुआ है और एयर एयर फोन गले में लटकाया हुआ है।

चंदन लगाया है हाथ में बिसलेरी का बॉटल लिए हुए फोटो खींच रहा है।

कुछ लोग नाव पे बेठे हुए दिखाई देरे है कुछ लोग नदी के किनारे दिखाई देरे है पेड़ दिखरा है औ आसमान दिख रहा है।

ये एक मैरिज हाल है जो कि डेकोरेट किया गया है फूलों से फूलों का रंग है।

टांगे हुऐ कपड़े दिखाई दे रहे हैं बहोत सारे लाइट जलती हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक हाल है हाल में एक किल खिड़की दिखाई दे रहे हैं जिसका दरवाजा बंद है ऊपर एक ग्रिल भी बना हुआ है।

अशोक का पेड़ है और कई सारे फील्ड में पेड़ है पेड़ की परछाईया दिख रही है फील्ड में आसमान दिख रहा है कॉलेज के पीछे बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है।

दिख रहा है दरवाज़े के पास से प्रकाश भी आता हुआ दिख रहा है और दिवार पर एक वाइट कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा है बहोत सारी ब्लैक कलर की कुर्सियां दिखाई दे रही है--

टेरेस है टेरेस पर एक काले रंग की टंकी रखी गई है टंकी में पाइप लगा हुआ है।

कंपनी के ऊपर सौरऊर्जा लाइट लगी हुई है दो ट्रांसफार्मर दिख रहा है ब्लैक कलर के तार दिखाई दे रहे हैं आसमान दिख रहा है पेड़ दिखाई दे रहा है।

गेट दिखाई दे रहा है लगा हुआ और सड़क पर गाड़ी आती हुई दिखाई दे रही है हरी हरी घासे दिखाई दे र --

यह एक केबिन है केबिन में एक टेबल है कुर्सी है टेबल पे गूगल पे रखा गया है लैपटॉप रखा गया है दो पुतला है पुतले का चेहरा ब्लर कर दिया है पुतला आधा है।

खिड़की के पास तीन गमला रखा गया है और अ हरी दीवाल पर अम्म ये बोर्ड है बोर्ड में चार्जर है और दरवाजे पर तोड़ा--

इस तस्वीर में दो मंदिर दिखाई दे रहा है और मंदिर का कलर पीला और लाल है पीछे वाला थोड़ा सा दिखाई दे रहा है आगे वाला--

बैग ही पीछे टांगा है और दो आदमी एक साथ बात कर रहे हैं पास में खड़े होकर।

वो अपने सिर पर गोनी लिए हुए जा रहा है और बोहोत सारे ड्रम दिखाई देरे गोडाउन में लाइट जली हुई दिखाई देरी जो पल्ला रखा गया--

यह एक टीआरजी क्लीनिंग सर्विस है जो की ऊपर लिखा गया भी है और उस पे लिखा गया है कि--

ट्रेनिंग कार पॉलिसी कार पे क्लीनिंग पेस्ट कण्ट्रोल ऊपर ब्लैक कलर की पाइप दिखाई दे रही है कांच का दरवज़ा लागा गया है दरवाज़े में परछाई दिख रही पेड़ का एक आदमी का थोड़ा सा परछाई दिख रहा है।

टंकी में चार चार टोटी लगा है और एक आदमी टोटी के पास पानी पी रहा है।

और सड़क बीच में दिखाई दे रहा है आसमान दिख रहा है पताका दिख रहा है लाल कलर में--

और कुछ मतलब फोटो फ्रेम नहीं बना है और नीचे तार दिखाई दे रहा है काले रंग का और--

और गिट्टी के पास फर्षा दिख रहा है और दो तसला दिखाई दे रहा है।

दो तसला दीवाल के पास खड़ा किया गया है और छोटा पौधा दिख रहा है पाइप दिख रहा है।

लकड़ी दिख रहा है गिट्टी के पास और पेड़ दिखाई दे रहा है आसमान दिख रहा है हरी-हरी घासे दिखाई दे रहा है।

अब पानी में एक टायर जैसा दिख रहा है।